एक आदमी भी बैठा हुआ है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनि हुई है और वो शर्ट जो है वो हाफ स्लीव की है उसने एक घड़ी भी पहनी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर एक काउंटर दिखाई दे रहा है काउंटर मतलब यहाँ पे टिकिट ली जाती है।

अच्छी दिख रही है। इनके पीछे मुझे एक पोस्टर दिखाई दे रहा है और कुछ फूल पौधे रखे हुए दिख रहे है और ये इनका डांस बहुत ही बेहतरीन और शानदार दिखाई दे रहा है ये इनका महाराष्ट्रियन लूक दिखाई दे रहा --

कॉलेज का जो डेकोरेशन है वो काफी ज्यादा सुंदर और अटॅ्रक्टिव्ह् किया गया है क्योंकि यहा पर मुझे ए_सी भी दिखाई दे रही है और बीच मे मुझे कुछ जुमर भी दिखाई दे सकते है।

ट्यूबलाइट लगी हुई दिखाई दे रही है और यहा पर जो मुझे कुछ बोर्ड भी लगे हुए दिखाई दे सकते है यहा पर दो एक आंटी खड़ी हुई जिन्होने साड़ी पहनी हुई है और एक आंटी खड़ी हुई है जिन्होने सूट पहना हुआ है और बहुत है बुजुर्ग दिखाई दे--

और यहा पर ए मुझे एक कर्टन भी दिखाई दे रहा है और ये कर्टन जो है वो खिड़कीके आगे लगा हुआ है यहा पर मुझे एक लाइट भी लगी हुई दिखाई दे रही जोकि बहुत ही जल रही है और एक एक फ़िल्टर वाली फोटो है।

पिछे देखने पर एक पोस्टर दिखाई दे रहा जिसमे स्टूडेंट्स के पोस्टर लगे हुए है और ए पोस्टर शायद मेरे मार्क्स अटेन्डन्स् हो सकता है।